पर्दे लगे है फैन लगे है बेड लगे हुए है डस्टबिन रखी हुई हैं।

खड़ी है एक्टिवा खड़ी है मालाएं रंग बिरं--

यहाँ पे वर्कर्स है जो बिजली का काम कर रहे है के ऊपर चढ़ा हुआ है।

यहां पे एक रोड बना हुआ है स्टेडियम है ये यहां पे--

यह कार्स की दुकान है छोटे छोटे टॉयज की--

के ऊपर टॉवेल रखा हुवा हैं कर्टन्स लगे हुए--

यहां पे दो लड़के खड़े हुए हैं जो पानी के किनारे खड़े हुए हैं दो वोटिंग चल रही है।

यहा पे काफी सारी गाड़िया खड़ी हुई है बाइक खड़ी है।

बॉटल्स हैं यहां पे काफी सारा सामान रखा गया है खिलौने भी हैं।

तेजा बुक स्टॉल की शॉप है ये--

मिठाई की दुकान है यहां पे रसगुल्ले लड्डू गुलाब जामुन--

चंपावाले का एड कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ--

कारपेट वगैरह बिछाए गए है यहाँ ग्रीन कलर के पोट गमले वगैरह लगे हुए है उनमें वगैरह लगा हुआ है पौधे लगी हैं।